पास में और भी समान पड़ा है एक बड़ा--

लाल रंग की कुर्सियां लगी हैं। पंखा लगा है। लाइटें लगी है। सामने खाट लगा है।

इसमें खाली रास्ता दिखाई दे रहा है पास में बहुत सारे घर व बिल्डिंगे दिखाई दे रही है बहुत सारी पेड़ दिखाई दे रहे है।

सामने से सूरज आसमान दिखाई दे रहा है एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है इसका कलर बिल्डिंग का लाल दिखाई दे रहा है।

ट्रक में सामान लेने के लिए लक्कड़ की पट्टी लगाई गई है जिस पे लोग चढ़ के--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

रिबन लगा हुआ है जो दो लोग खड़े हैं वह काट रहे हैं।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

पीछे दुकान नीचे दुकान के मालिक का नाम का एक क्रॉस का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसमें स्टूल रखी दिखाई दे रही है कुछ खिड़कियां दिखाई दे रहे कुछ लाइटें लगी हुई पंखे लगे हुए दिखाई लगी दे रहे हैं और --